रचे गए हैं साथ ही यहाँ पर --

बाहरी भाग हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑटो खड़े हैं जो की स्टेशन में आने वाली यात्रीओ को उनके गंतव्य स्थान तक पहुचा सकते हैं।

कई न कई सूर्य की जो ल-लालिमा है वो त निखर जाती है जिससे की हमारा --

यहाँ पर किसी सम्हारो में या उत्सव में लोग एकत्रित हुए हैं तथा लोगों द्वारा विभिन्न क्रिया कलाप किए जा रहे हैं।

किसी मकान का प्रवेश द्वार है तथा मकान पर --

विभिन्न लोगों द्वारा अपने प्रोजेक्ट समझाने हेतु --

यह किसी मंदिर का प्रवेश द्वार है मंदिर में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न देवताओँ की मूर्तियों को स्थापित किया गया है।